केक के ऊपर काफी सरे चॉक्लेट दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कुछ किटकैट नजर आ रही हैं यहाँ पर कुछ कैडबरी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ बिस्कुट नजर आ रहे है यहाँ पर--

यहाँ पे एक तौल काटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एल कोल्डड्रिंक की बोतल दिखाई दे रही है यहाँ पर अंडों की ट्रे नज़र आ रही हैं।

सैलून में काफी ज्यादा बड़े आईने नज़र आ रहे है सैलून में कुछ पंखे दिखाई दे रहे है सैलून में काफी सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर कुछ चेयर नज़र आ रही है यहाँ पर कुछ पानी की केन दिखाई दे रही है।

पीछे दीवार पर डॉक्टर भीम राव आंबेडकर जी कि फोटो नज़र आ रही है पीछे काफी सारा सामान नज़र रहा है ऊपर सीलिंग पर फैन दिखाई दे रहा है ऊपर सीलिंग पर लाइट नज़र आ रही है।

दिखाई दे रही है लड़की डांस करते हुए नज़र आ रही है लड़की ने एक ब्लैक टॉप पहना हुआ है लड़की ने फुल टॉप पहना हुआ है लड़की ने एक घागरा पहना हुआ है घागरा लाल कलर का दिखाई दे रहा है।

टेंट काफी बड़ा नज़र आ रहा है टेंट के अन्दर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बाउंड्री दिखाई दे रही है बाउंड्री लकडियो से बनी हुई है यहाँ पर कुछ गधे दिखाई दे रहे है गधे काफी खड़े नज़र दिखाई दे रहे है गधे काफी बड़े दिखाई दे रहे है।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

प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म काफी बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर एक नल दिखाई दे रहा है नल पर एक महिला नजर आ रही है।